तरफ से सड़क है --

यह जंक्शन है --

एक पीला सा बड़ा सा एक --

और बहोत सारे लोग उसमें मजे कर रहे हैं।